ये लगा और व्हाइट कलर की है और मंदिर जैसा बना हुआ है। यहाँ से चारो तरफ से बास का घेरा हुआ है और इसमें फोर व्हीलर और बाइक रुकी हुई है। यहाँ पे प्रशासन भी है जो कुछ हंगामा न हो इसके कारण।